और आगे एक वाईट कलर की कार भी खड़ी हुई हैं और एक बाईक भी खड़ी हुई हैं ब्लैक कलर--

एक मंदिर हैं पूरा वाईट कलर का उस पे रेड कलर का डिजाइन दिया हुआ हैं अंदर बहुत सारे लोग बाइटे हुये हैं बच्चे बाइटे हुये हैं बाहर एक आदमि खड़ा हुआ हैं ब्लू कलर का कैप लगा ये हुये हैं एक पोधा लगा हुआ हैं बड़े बड़े पत्तों का मंदिर का सामने नाम लिखा हुआ हैं।

ये एक दुकान है जिसमे लिखा हुआ है खदिमस फूड यह ये चप्पल कि दुकान है यहा चपपले मिलती है गेंदे कि फूलों से माला कि तरह सजा हुआ है ऑर खदिमस फूड यह लिखा हुआ है चप्पलों कि बहुत सारे डिब्बे रखे हुए है।

रोड हैं रोड के ऊपर सामने तीन वाईट कलर के शटर दिख रहे हैं उस पे बिच मे एक दुकान हैं जिस पे लिखा हैं लीला स्पोर्ट्स यहाँ स्पोर्ट्स का समान मिलता हैं और एक बोर्ड लगा हुआ हैं येल्लो कलर का उसपे भी लीला स्पोर्ट्स लिखा हुआ हैं बहुत सारे पेड भी दिख रहे हैं।

यहाँ पे एक रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ है बर्थडे पार्टी हो रही है सामने हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है पिंक कलर का वाइट कलर के बहुत ज्यादा बलून्स लगे हुए है पूरे चारो तरफ दो लाइटें ल भी लगी हुई है जो की बलून्स पे पिंक कलर की लाइट पढ़ रही है।

छोटा सा टब भी रखा हुआ है एक येलो कलर की आदी रखी हुई है एक आ आलू भी रखा हुआ है।

येल्लो कलर के आ पार्किंग के अंदर सामने एक वाईट कलर कि बिल्डिंग दिक रही हैं एक भट उस के पीछे सेफ लिखा हुआ हैं।

हाँ एक बड़ी सी दुकान दिख रही है उसके बहार एक वाइट स्कूटी खड़ी हुई है पेनस की दुकान है वो।

मंदिर बना हुआ है ऊपर लाइट जल रही है बहुत ज्यादा गेट दिख रहा है लोहे की छते भी दिख रही है एक दो तीन गोल गोल बने बने हुए है नीचे एक आदमी भी खड़ा हुआ दिख रहा है।

यहाँ एक शादी हॉल का स्टेज बना हुआ है सामने टेबल रखी हुई है बैठने कि दो छतरी जैसे लाइट लगी हुई हैं जो टेबल कि तरफ रोशनी मार रही है पीछे पूरा फूलों से सजा हुआ है ऊपर पिंक कलर के येलो कलर के रेड कलर के परदे लगे हुए है ।

एक लोहे का गेट हैं ब्लैक कलर का और अंदर एक कार खड़ी हुई हैं सामने एक बिल्डिंग हैं वाईट कलर की उस पर रेड कलर का पेंट है और अ लोहे के गेट पे नो पार्किंग द लिंक लिखा हुआ हैं।

ये एक मंदिर है खूब बड़ा सा जो वाइट कलर का है इसमें एक दो तिन चार छोटे बड़े बॉक्सेस बने हुए है सामने नीचे पिलर लगे हुए है लोग खड़े हुए है बहुत सारे आस-पास हरे कलर के पेड़ लगे हुए है।